ज जो की ई बहुत बड़े डैम से होती हुई गुजर रही है।

यह चित्र एक बहुमंजिल बिल्डिंग का है।

बसों की हालत काफी पुरानी है।

पेड़ है और चर्च का रंग लाल व भूरा है।

एक जगह का निर्माण करते हुए नजर आ रहे है।

इस चित्र में एक रास्ते के उस पार कुछ बिल्डिंगे नजर आ रही हैं।